और थोड़ा बहोत पानी भी है पत्थर सब भी हैं और पेड़ सब भी है और बगल में पहाड़ सब भी हैं बहोत ही अच्छे हैं।

माहौल भी है और इसमें ए_सी भी लगा हुआ--

पनीर पराठा है और बहोत ही सुंदर से रखा हुआ है और बहोत ही अच्छा--

बहोत ही अच्छे तरीके से सजा के रखे गए हैं।